यह तस्वीर किसी गणेश मंदिर की दिखाई दे र--

फोटो में एक दुकान दिखाई दे रही है।

और उस बिल्डिंग पर कुछ छात्रों की फोटो दिखाई दे रही है।

यहां किसी ट्यूशन क्लासेस की तस्वीर नजर आ रही है।